यहाँ मुझे बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है और यहाँ मुझे ए यहाँ एक गेट दिखाई दे रहा है पंडाल लगा हुआ दिखाई दे रहे है यहाँ सभी इन्जॉय करते हुए नजर आ रहा है बोहोत से लोग दिखाई दे रहे है।

और ब्लू कलर के बलून दिख रहे है व्हाइट कलर के दिख रहे है और यहाँ मुझे बहुत सारी सजावट दिखाई बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

हमें नाव दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे उसमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है बेठे हुए दिखाई दे रहे है बहुत से दिखाई दे रहे है और भी नाव दिखाई दे रही है और पानी में तरंगे दिखाई दे रहे है नदी की|

वहां मुझे मकान बने हुए दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे कुछ लोग बस में बेठे बहुत से लोग दिखाई दे रहे |

मुझे कुछ झंडे है कुछ दिखाई दे रहे है मंदिर बनी हुई दिखाई दे रही है| मंदिर की रिपेरिंग के लिए ओ झंडे लगाये गए है और मंदिर में गोल्ड कलर की दिख रही है और यहाँ पे पेड़-पोधे दिखाय दे रहे है बहोत सारे दिखाई दे रहे है।

यहाँ मुझे और से एक मकान जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है मुझे और सारे समान पड़े हुए यहाँ दिखाई दे रहे है ईटे पड़ी हुई दिख रही है।

यहाँ मुझे एक बुलोरू दिख रही है जाते हुए नजर आ रही है उसमे बहोत से लोग बेठे हों होंगे और यहाँ मुझे बहोत सारी घनी चारे दिखाई दे रहे है कचरे दिखाई दे रहे है कुछ और बहोत सारे मकान बने दिखाई दे रहे है।

मुझे कुछ मकान बने हुए दिखाई दे रहे है कुछ मकानों पे बने हुए दिखाई दे रहे है कुछ पटरियां नजर आ रही है। दिखाई दे --

पेड़-पोधे नजर आ रहे है चारो तरफ दिखाय दे रहे है और यहाँ पर मुझे एक गमला कुछ अ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे है| उसपे कुछ पोधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां मुझे एक अ घर बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये घर के गेट लगे हुए दिखाय दे रहे दो और यहां सीढ़ियां बनी हुई दिखाय दे रही है।

और भी घर बने हुए बगल में दिख रहे है और कुछ घांसे लगी सीढ़ियों के पास दिखाई दे रहे है पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

पेड़-पौधे नजर आ रहे है और घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे बहुत सारी बालू बोरी दिखाई दे रही| यहाँ मुझे एक बड़ा दिखाई दे रहा है| और यहाँ मुझे---

एक झंड झंडा दिख रहा है उसमे कुछ तिरंगा लगा हुआ दिखाई दे रहा--

यहाँ मुझे कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग यहाँ सामान परचेस कर रहे हैं मछलीओ को खरीद रहे हैं।

बुलडोज़र गाड़ी दिखाई दे रही है| उसमे कुछ उठाते हुए नजर आ रही है और ये बहुत सारी वर्कर दिखाई दे रहे है काम करते हुए नजर आ रहे है।

मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है एक स्टेज हाल दिख रहा है| यहां मुझे मैरिज हॉल दिख रहा है बहुत सारी चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है कालीन बिछी हुई रेड कलर की दिखाई दे रही है।

कुछ गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं व्हाइट और रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं गेट दिखाई दे रहा है और गेट के अंदर कुछ कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं गेट के पास बहुत सारी सजावट की गई है और यहां।

एक प्रतिमा दिखाई दे रही है और यहाँ श्री गणेश जी भी दिख रहे हैं और यहाँ शेर दिखाई दे रहे हैं| उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है हरे कलर की पहन रखी है और कुछ येलो कलर के पहन रखे हैं।